बिल्डिंग है । बिल्डिंग के पीछे लाइट लगा हुआ है । आगे--

अँधेरा हो रहा है रात का समय है।

उधर एक आदमी शीशा लेकर खड़ा हुआ है एक आदमी चल रहा है।